यह बैंक के बगल में इस बैंक का एटीएम भी है।

यह एक सेलून है। यहां सेलून में लोग बाल कटवाने के लिए दाढ़ी बनवाने के लिए हेयर कलर करने के लिए आते है।

यह एक स्कूल है। यह स्कुल में बच्चे लोग चार्ट पेपर को कट करके उसे अच्छी-अच्छी डिजाइन बनाकर इसे चिपकाते हैं।

यहाँ पर इन सब मूर्ति की पूजा की जा रही है।

यह एक कृष्णा डेयरी फार्म है।

क्योंकि यह बैंक में लोग पैसे जमा करने के लिए और पैसे निकालने के लिए भी यहाँ पर आते हैं।